एंट्रेंस गेट भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारा पोस्टर भी।

और इंट्रेंस गेट भी दिखाई दे रहा है।

रूम के अंदर बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

मंदिर के आसपास बहुत सारे फूल और पेड़ लगे हुए हैं।

और एक आदमी भी दिख रहा है।

तल के सामने एक बैनर लगा हुआ है।

और दुकान के ऊपर एक बड़ा सा बैनर भी लगाया हुआ है।

और एक कंडक्टर और बहोत सारे पैसेंजर्स दिख रहा है।

जो की अलग अलग रंग का है।

जो की ब्लू और वाइट कलर का है।

झूठ के पास में एक स्विमिंग --

घर का बाहर इलेक्ट्रिक पोल भी दिख रहा है।

जो की येल्लो कलर का है।